इसमें पाँच बच्चे बैठे हैं जो सीधे तरफ बैठा है उसके पीछे गमला हैं और हर एक बच्चा अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा हैं कोई कुछ न कुछ बना रहा हैं यहाँ पे गम हैं पेपर्स हैं।

हर एक बच्चे के पास अपना अपना अलग-अलग मैट है और बच्चों का जो रिफ्लेक्शन है वो एक मिरर में दिख रहा है जो सामने उनके मिरर है।

चर्च है जो तीसरे नंबर पे खड़े हैं वो चर्च के फादर है और जो पांचवें नंबर पर खड़ी है वो सिस्टर है।

ये कम्पनी का प्रेजेंटेशन रूम है जहाँ पे प्रेजेंटेशन बोर्ड है और बहुत सारे चेयर्स है हर एक चेयर के सामने एक पेन और बुक रखा हुआ है|

ऐसा लगता है की ये पूरा इलाका ही जंगल का है जहाँ बीच में खूबसूरत झरना है वहीं पास में एक आदमी खडा है।